और चर्च के अंदर ईसामसीह और प्लस का निशान बनाया हुआ है। भाइट कलर की --

उनका कलर काला हऐ। गले में लाल कल की पट्टी सफ़ेद पट्टी और --

तीन लेडिज दो बच्चे और एक जेन्ट्स दिख रहा हैं।

उपर माता रानी की प्रतिमा दिख रही है।

ट्रोली के अन्दर मिट्टी पड़ी हुई है।

ऐसा लग रहा जैसे क्रेसर का काम यहाँ पे हो रहा हो।

एक डब्बा दिख रहा है जोकि डाक घर का है पोस्ट ऑफिस का है। डब्बे के बहार एक लड़का बैठा हुआ है।

ये रोड भी गया है ग्रीन कलर का मारुती वेन भी खड़ी है।

शो रूम के बहार टीन सेट डला हुआ है। टीन सेट के ऊपर --

अं गार्डन में अगल-बगल पेड़ खड़े हुए हैं। ऑफिस के बगल के किनारे साइकिल खड़ी हुई --

यह एक बहौत बड़ी मार्किट दिखाई पड़ रही है है तो ये फोर व्हीलर भी खड़ी है मोटर साइकल भी क्या ही खड़ी है।

एक बोनड्री दिख रही है।

कुछ लेडिज और जेन्ट्स घुम रहे हैं पारक में।

फूलों से डेकोरेशन है और नीचे एक ग्रीन कलर की --

यह एक स्टेशन है।